यहाँ पर एक बहुत बड़ा नदी दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे है और आसमान का रंग सफेद और नीला दिखाई रहा है और यहाँ बहुत लम्बा --

पानी गहरा दिखाई दे रहा हैं और यहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे--

ये भैंसे नहा रहे है और रस्सी से बंधे हुए है और --

और इस दोनो नांव मे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं और चिड़िया भी आसमान मे उड़ रहै हैं।

एक छोटा- सा घर भी दिखाई दे रहा है जहाँ तोता है और इस घर के पीछे में बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है और यह मैदान बहुत छोटा लग रहा है और यहाँ पर --

तीन झूले भी दिखाई दे रहे है और इस घर के बगल में --